वही इस फोटो मे हमे उसके पीछे एक ओमनी का गेट खुला हुआ जिसको एक आदमी खुलके रखा है वो भी दिखाई दे रहा है।

अमूल का की दुकान है उसके अंदर हमे तीन लोग दो लोग कुछ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं ।

यह फोटो में एक ब्रिज का दिखायी दे रहा है वही इस ब्रिज के ऊपर हमें बहुत सारे लाइट के खम्बे भी दिख रहे हैं।

यह फोटो हमें गराज का दिखाया जा रहा है जहां पे एक कार का गेट खुला हुआ है वहीं दूसरी कार का --